बहुत ज्यादा सा पेड़ लोग भी है उधर में।

आगे में एक अ लोगो जैसा इंट्रेंस में बनाके हैं।

पूजा भी किया दिखाया है और उधर में तीन थू भगवान का मंदिर जैसा भी दिखाया गया है आपको।

पिक्चर भी उधर में दिखाया गया है।

और ये बिल्डिंग तो हॉफ कंप्लीट है और हॉफ इनकंप्लीट है।